यहाँ एक सड़क नजर आ रहे है। सड़क पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का रंग गुलाबी नजर आ रहा है। बिल्डिंग में खिड़कियां लगी हुई है।

यहाँ एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि बहोत सुन्दर लाइटों से सजी हुई है। नीचे पेड़ दिखाई दे रहे है इनका रंग हरा --

सफ़ेद नजर आ रहा है। सामने एक बिल्डिंग का लाल् रंग लाल और सफ़ेद --

सड़क के किनारों पर एक भूरा-सा रंग नजर आ रहा है। सड़क का रंग भूरा और सफ़ेद नजर आ रहा है।